पीछे के साइड एक नदी है जिससे पानी बह रही है और यहाँ पे एक लड़का है जो कि नहा रहा है।

यह एक मस्जिद के जैसा नजर आ रहा है जिसमें तीन बड़े बड़े गुम्बे (गुम्बद) नजर आ रहे हैं इसका एक द्वार नजर आ रहा है।

और एक सामने बगल में घर में जिसमें पानी की टंकी नजर आ रही है और इसका एक प्रवेश मुख्य द्वार आगे दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमे एक लाल पहाड़ नजर आ रहा है जो की बहुत ही बड़ा है इसमें दो तीन घर नजर आ रहे हैं इसमें बहुत सारे टावर नजर आ रहे हैं।

यहाँ एक घर नजर आ रहा है जो की विश्वकर्मा भवन है इसके आगे एक इंसान कुर्सी लगा कर बैठा है और एक बूढ़ा इंसान साइकिल से जा रहा है।

दूसरे घर आप लकड़ी की बास की बनी हुई है जो की पेड़ को घेर के रखी हुई है और इस कॉलेज का नाम है अर्जुन सरस्वती अर्जुन एकला महा विद्यालय।